प्लेग्राउंड के बाजू में पूरा ग्रीन कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

और यहां एक माल है।

और ऊपर का जो नजारा है वो देखने में मस्त है।

यहां एक गार्डन भी है यह इसी के नीचे उस साइड देखें तो गार्डन जैसा दिख रहा है।

ये नजारा देखने में काफी अच्छा लगा रहा है बड़ा मस्त लग रहा है।

ऐसे यहां पे नजारा दिख रहा है कि कोई लोग यहां पे कॉफी पी रहे हैं।

यह देखने में अच्छा लग रहा है।

और रोड में कोई जा रहा हैं तो कोई आ रहा हैं।

जैसे में कुछ कोई खरीद रहा है मार्केट जैसा नजारा दिखाई दे रहा--

जैसे कि पैसे निकाल रहे होंगे आई थिंक ।

पोस्ट ऑफिस के सामने एक कार खड़ी है एक टू व्हीलर बाइक खड़ी है।

बेकने के लिए यहां पे रखे है।

शोरूम दिखने में अच्छा है।

यहां से जाने का रास्ता है।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

बहुत सारा पत्थर भी है।

स्टूडेंट एकदम लिख रहे हैं।

और इधर एक दीवार में एक पोस्टर लगाया है।

यहां पे चेयर दिखाई दे रही है।

यह एक रोड है रोड से एक अंकल जा रहे है।

राइट साइड मे भी ग्रीन पेड़े और लेफ्ट साइड मे भी ग्रीन पेड़े है।

यह जो नजारा है अच्छा है।

एक रूम में रखे हैं।

यहां एक गाड़ी गैरेज दिखाई दे रहा है।

शॉप पे गाड़ी शोइक साइकिल दो तीन अंकल लोग खड़े हैं।

सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है।